बहुत आदमी के बहुत बड़का फील्ड है सब ।

की मस्त एकदम तर के गाछ के गोल उल घर उर बनल के पूरा मस्त लग रहा है।

आ ई तो पूरा खून वुन बह रहले मछलिया के इधर से तर गइल है।

कितना बड़ा फील्ड लगे उस में आदमी के खजूर के गाछ के लगा है।